बाइक के बगल में दो गुलदस्ते रखे हुए ह--

और पाया पर खड़ा है।

दो पाया लाल कलर का है और दो उजला है और बगल में पेड़ पौधे हैं।

लोहे का बाउंड्री दिया हुआ है और लोहे का गेट पर एक हेल्मेट रखा हुआ है जिसका कलर व्हाइट है।

इस चित्र में बहुत सुंदर मकान दिख रहा--

ऊपर में बहुत सारा फैन लगाया हुआ है।

उसमें बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

बहुत सारे लाइट लगे हुए हैं।

बहुत सारे आदमी खड़े हैं।

ब्लू कलर का स्टीकर है।

इस चित्र में जिम का दृश्य दिख रहा है।

उसके बगल में एक पोखरा है।

इसमें इलेक्ट्रॉनिक शॉप लिखा हुआ है।

बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

इस दृश्य में नदी दिख रहा है।

व्हाइट ग्रे और ब्लू कलर का है।

जो एक कुर्सी पर बैठी है और एक छोटी लड़की कुछ दे रही है।

दुकान में बहुत सारे सामान दिख रहे हैं।

बिजली का टावर लगा हुआ है बहुत सारा।

उपरे छत जैसा ढाला हुआ है जिसका कलर ग्रे है और स्काई है।

दीवाल पर एक पोस्टर लगा हुआ है उस पर इसमें काउंटर लिखा हुआ है जो ब्लैक कलर का है।

बाहर गिट्टी बालू ईटा सब रखा हुआ है।

के आगे एक दरवाजा है और रूम का कलर व्हाइट है।

इसमें एक कार खड़ा है।

कार के बगल पोस्टर लगा हुआ है जिसका कलर ब्लू है।